यहां पे मुझे एक साइड में बहोत बड़ी दुकान दिख रही है जिसका नाम है कैंसर हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट ।

और यहां पे एक नाई है वो कटिंग बनवा रहा है और यहां पे एक पंखा भी लगा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पंखा लगा हुआ है।

और यहां पर बोहोत ही इंटरस्टिंग चीजें पड़ी हुई हैं बोहोत ही मजेदार आ रहा है।

झरने भी नजर आ रहे हैं और झरनों में पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

और मुझे यहां पे चारों तरफ--

और ऊपर की तरफ एक मौखा भी नजर आ रहा है।

और छोटे मोटे कचरे भी पड़े हुए हैं।

बहुत सारा समान पड़ा हुआ है और यहां पे सेल नाम की दुकान दिखाई दे रही है।

उसने लाल साड़ी पहनी हुई दिख रही है पीछे से स्टेज भी दिख रहा है।